गाड़ी खड़ी हुई है और उसके सामने मन्दिर है क्युकी शायद चप्पल बाहर पड़ी हुई है तो मंदिर ही होगा।

टायर्स लगे हुए है पानी के बिछो बीच चा रही है अगल पनि के साइड से बहुत बड़े-बड़े पेड़ --

बहुत ही प्यारा सीनरी है एक अरेट अ-एक नारियल का पेड़ दिख रहा है छोटासा टापू बना हुआ है पीछे पानी है समुद्र है।

ए समुद्र का किनारा है। जहा पर एक नाव अभी अभी बस पहुचने ही वाली है। बाकी नाव--

दो रेक्लायनर रखे हुए है पीछे एक व्हाइट कलर और ब्लॅक कलर का चेस बोर्ड टाइप सा रखा हुआ है पीछे मे सर धुलने के है ये किसी पार्लर का सीन है ।

उसके पिछे एक स्कूटी खड़ी है। स सफ़ेद रंग की व्हॅन खड़ी है।